जहाँ पे बैंगनी कलर का रंग किया गया है और आपको यहाँ पे पाँच खिड़किया और दो दरवाजे दिखाई देगी।

उसके आगे आपको हरे कलर के पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे है उसके आगे आपको मिट्टी और पत्थर दिखाई दे रहे है ।

ये चित्र आपको एक समारोह हॉल की दिखाई देगी जहाँ पे बहुत सी कुर्सियां है जो की लाल कलर की है।

इस चित्र मे आप को एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा उसके आगे आप को एक सड़क दिखाई दे रही होगी उसके आगे आप को एक ग्रिल दिखाई दे रहा होगा जो की बैंगनी कलर का है।

जो की हरे कलर मे है और यहाँ पे दो बिजली के खम्भे दिखाई देगी और रेत दिखाई देगी और नीचे आपको बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे पौधे दीखाई देंगे।